जो जिस पर से एक लड़का जा रहा है जो की पीली शर्ट और नीला पेंट पहने हुए है और उसके बगल बगल में बहुत सारे पेड दिखाई दे रहे हैं एक यहाँ पर टावर भी दिखाई दे रहा हैं।

जो की बहोत सुन्दर दिख रही है उस पर एक बड़ी चेयर भी लगी हुई है जिस पर बोहत सारा समान रखा हुआ है उसके बगल-बगल में बहोत सारी कुर्सी रखी हुई है उसके बगल-बगल में बहोत सारे वाल्स भी लगे हुए हैं।

इसके बगल-बगल में बोहोत सारे नीले-नीले कलर के परदे टंगे हुए है जो कि बोहोत सुंदर दिखाई दे रहे है और खिड़की भी दिखाई दे रही है जिसमें बोहोत छोटे-छोटे गेट लगे हुए है।